यहां पर दो बेड नजर आ रहे हैं।

यहां पर पीछे एक बच्चे ड्रेस में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो दिन के समय की है यहां पर सामने की ओर हमे एक घड़ी भी लगी दिखाई दे रही है।

यहां पर ऊपर वाई सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर की ओर हमें कुछ लाइटे और पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गेट के बाहर हमें कुछ गमले रखे हुए भी नजर आ रहे हैं।

उसके बगल में अशोका इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।